रास्ते के आजू-बाजू में बहुत सारी दुकानें भी हैं और एक पोस्टर भी लगा है।

ऊपर की तरफ एक बड़ी सी चट्टान भी है और ऊपर की तरफ नीला आसमान भी छाया हुआ है।